और एक दूसरी दीवार पर नेचुरल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और बाहर एक आदमी हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

अ पैकेट रखे हुए हैं चम्मच है और एक ट्रे के अंदर हमें--

और जिसके आगे बना हुआ हमें खड़ी हुई बहुत सारी गाड़ियां--

और बहुत सारे लोग हमें पानी के किनारे पर दिखाई दे रहे हैं गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

एक पेट्रोल पंप हमें दूर से दिखाई दे रहा है जिस पर ट्रक गाड़ियां कारें खड़ी हुई है।

हमें छोटे-बड़े हरे भरे पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और बहुत सारी लकड़ियां सूखी टेहनियां--

हमें एक ए_टी_एम मशीन अंदर रखी हुई दिखाई दे रही है एक जगह पर।

बाहर कांच के गेट हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आदमी तैरता हुआ नजर आ रहा है जिसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है।

और उसमें अंदर भी पेड़ लगे हुए हैं और बाहर भी पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे पैकेट्स और डब्बे और अंडे रखे हुए टेबल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं।

हमें बिल्डिंग नजर आ रही है जिस पर ऑफिस ऑफ द ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर का बोर्ड लगा है नीली खिड़कियां हैं।

हमें नीला एक गेट बड़ा सा लगा हुआ दिखाइ दे रहा है और उसके अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है।

अ एक शर्टल दिखाई दे रहा है हमें खुला और जिसके अंदर हमें--

पेमेंट्स बेक बैंक का पोस्टर हमें लगा दिखाई दे रहा है शिवाजी नगर उप डाकघर लिखा है।

एक आदमी एक लड़का हमें सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा हमें नहीं दिख रहा है।